ये सब्जी मंडी का है जे मछली वाला है यहाँ मछली मिला ह---

जैसे की देखा जा रहा है ये देख-रेख में और----

इ देखे में लगे हेय बराती सराती के लिए टेंट लगाबल गले हेय जो कि अच्छा चमक रहले चम-चम लाइट भी हेय।